बहुत सारे स्टैंड है।

यह नदी है नदी में बहुत सारा पानी है।

आप देख सकते हैं यह नदी है।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

उसे शर्ट है टी शर्ट है सूट है साड़ी है।

नीचे बिछाय गए है बहुत सारे कॉपी के ढेर लगे हुए हैं।